यहाँ हम उबंटू लिनक्स 1004 और लिबरऑफिस सूट वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं
पहले प्रस्तुति sampleimpress odp खोलें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
add पर click करें
custom animation dialog box प्रदर्शित होता है
ध्यान दें कि entrance टैब खुलता है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
basic के नीचे diagonal squares चुनें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
effects options dialog box प्रदर्शित होता है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
timing टैब पर click करें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
अब पहले animation को चुनें
play button पर click करें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
effects options dialog box प्रदर्शित होता है
text animation टैब पर click करें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
ok पर click करें
play पर click करें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
यहाँ आपके लिए एक नियतकार्य है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
इस animation को play करें